और जमीन भी दिख रही है और पेड़े हरियाले भी दिख रहे है इधर मशीन भी खड़ी है। एक घर है उसमें बाउंड्री भी दिख रही है। उधर--

ये गंगे मईया है। इसमें पुल भी है इसमें खम्भा भी एक है और देखो नाव भी है यह पानी भी बड़ा अच्छा लग रहा है। आदमी सारे भी खड़े हुए हैं। कपड़े रंग लाल हरे पीले सब रंग पहने हुए हैं।

पीला भी है उसमें बल्ब बल्ब नहीं हैं। बल्ब दिख रहा है। यह सारे जंगले भी है एक का पेड़ है यह आदमी भी दो खड़े हुए --

यह रोड है। इसपे ग्रील भी लगी है हरे लाल और सफेद भी।

में रखे हुए हैं छोटे-छोटे मटकी जैसी और नीचे लाल रंग का गेट है उसमें --

ये बड़ी पारक है उसमें रेल्विंग है नीली सारी गाड़िया भी खड़ी है उधर आम का पेड़ भी है और नीचे जमीन हरियाली दिख रही है। और बहुत सारे पेड़ भी है। और --